यह चित्र किसी रेलवे स्टेशन का हैं और यहाँ पर बहोत पुरानी एक बिल्डिंग बनी हुई हैं जोकि एक मंजिल हैं सामने कुछ --

और एक फोनपे का क्यू_आर कोड भी लगा है ये किसी --

सामान के चित्रण किया गया है नीचे कुछ बहोत बड़े नाम भी लिखे हुए हैं नोट हमारे यहां पर सभी होलसेल रिटेल में --

और एक बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है जो कोई हॉस्पिटल दिखाई दे रही है और कुछ बड़े पेड़ भी लगे हुए है यहां पर पार्क मे कुछ --

और सामने कुछ दुकानें भी दिख रही है।

सामने बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है एक व्यक्ति अपनी फोटो ले रहा है और जिसके कानों मे इयरफोन लगे हुए है।

और पास में कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं और यहां पर कुछ शॉप भी लगी है और उस पर पर्दे लगे हुए हैं एक छोटी छोटी भी दिखाई दे रही है।

और उसके एक ढलान बनी हुई है और उसके ऊपर एक छोटा सा घर भी बना हुआ है कुछ लोग यहां पर पर्यटक के रू में आए हुए हैं।

यह फोटो एक रेस्टोरेंट या भोजनालय की है जहां पर बहोत सारे व्यक्ति आए हुए हैं कुछ टेबले और कुर्सियां भी लगी हुई है।

वे मैं पुरुषों के कपड़ों की सिलाई या सूट सिलने का कार्य करती है यहां पर बहोत सारे सूट है।

ऊपर कुछ ए प्रिटिंग पेज भी रखे गए हैं और ये कुर्सी है।

हरियाली के लिए दोब भी लगाई हुई है एक व्यक्ति पार्क में बैठा है पास में डस्टबिन भी रखा हुआ है।

ये किसी डॉक्टर की ऑफिस दिखाई दे रही है यहां पर बहोत सारे सफेद कपड़ों में लड़कियां बैठी हुई है।

बाहर एक गाड़ी खड़ी है और पास में ही पार्क भी बना हुआ है पार्क में बहुत सारे पेड़ भी और पोधै भी लगे हुए हैं।

और कुछ बॉक्स से नीचे रखे हैं जो की बहुत बड़े हैं और सभी बॉक्सो के रंग अलग अलग दिखाई दे रहे हैं।